इस सड़क पर बहुत सी गाड़ी खड़ी हैं यहाँ पर काफी भीड़ भी हैं ।

इस मैदान में दो लड़के हॉकी खेल रहे हैं यहां पर --

यहां पर अनेक सारे घर हैं ये घर में स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है।